ये किसी के घर के सामने दिख रही है औ वहां पे--

ऊपर सो व्हाइट आसमान दिख रहा है अ दो चार पर्दे दिख रहे हैं जो नीले कलर के परदे लगे हुए हैं कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है यहां पे स्टोर पे बहोत सारे--

अ कपड़े लगे हुए हैं वहां पे दो चार इंसान भी खड़े हैं जो कपड़े बेच रहे हैं दो चार इंसान वहां से कपड़े ले भी रहे है।

बालकनी का बहुत अच्छा व्यू आ रहा है बालकनी के पास में एक पर्दा भी लगा हुआ है साइड में एक और टेबल है एक चेयर भी दिख रही है यहां पे फ्लोर व्हाइट कलर का है।

ऊपर नीला आसमान बहोत बढ़िया दिख रहा हैं चार पाँच लोग यहां इस तस्वीर में दिख रहें हैं बहोत सारे पेड़ दिख रहें हैं इस तस्वीर में मकान बनता हुआ लग रहा--

और ये एपिसोड बहुत बढ़िया दिख रहा है यहां पे बहुत सारे वस्तु दिख रही यहां पे कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है या फ्रिज दिख रहा है या कूलर भी दिख रहा है।

यहां पे एक दुकान भी दिख रही है जिसमें एक ब बच्चा खड़ा हुआ है।

और साइड में दे दो दो चार दो तीन दीवाल दिख रही है ऊपर आसमान भी अच्छा सा दिख रहा है।

ये गाड़ी पता नहीं कौन सी है पर ये गाड़ी दिख रही है उसके पीछे दो चार लोग दिख रहे हैं जो आते हुए दिख रहे हैं।

ये एक स्टोर दिख रहा है जिसमें बा बाजू में एक अंकल खड़े हुए दिख रहे हैं यहां पे ये अच्छा व्यू है यहां पे एक फ्रिज दिख रहा है फ्रिज में बहोत सारी--

यहां पे एक जिम का व्यू लग रहा है इसमें एक दो लाइट दिख रही है सामने एक ग्लास दिख रहा है जिसमें से ये सब साधन आर पार दिख रहे हैं।

और यहां पे दो चार टेंट बने हुए हैं।

यहां पे एक गार्डन का व्यू लग रहा है जहां पे एक एक इंसान गार्डन को पूरा साफ करनेल करने में लगा हुआ है।

उसके ऊपर ये दो चार बिल्डिंगें के दिख रही है जो बहुत अच्छी बिल्डिंगें लग रही है।

ये किसी सोसायटी का लग रहा है जहां पे दो चार बाइक खड़ी हुई है।

और दो चार इंसान गाड़ियां रिपेयर कर रहे हैं। दो चार इंसान सोए हुए हैं जो भी काम नहीं कर रहे हैं।

और उसके बाजू में एक टी_वी दिख रहा है जो अभी बंद है ऊपर एक कैमरा दिख रहा है।